इस चित्र में हमें ऑफिस दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो झंडा लेहरा रहे हैं परफॉर्मेंस कर रहे हैं।

लाइटें जल रही हैं हरी नीली पीली लड़की ने फ्रॉक पहनी है।

इस चित्र में हमें सिनेमा घर दिख रहा है।

फूलों की माला है रिबिन दिख रहे हैं।

फेविकोल के डब्बे रखे हैं पेंट रखा है पेड़ दिख रहे हैं।

जमीन पर धूप निकली है।

पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

काफी सारे खिलौने रखे हुए हैं।

डॉल हाउस और गुड्डे दिख रहे हैं।

डमी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान में बादल हैं।

पहाड़ दिख रहा है आसमान साफ है।

तार दिखाई दे रहे हैं गाड़ियां खड़ी हैं काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।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

एक गाड़ी खड़ी है जिसका रंग सफेद है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान में बादल हैं ।

दो ब्रिज दिखाई दे रहे हैं एक लोहे का है एक सीमेंट का है।

पीला रंग की एक औरत दिख रही है।

एक गाना गा रहा है एक तबला बजा रहा है।

एक आदमी ने नीला कुर्ता पहना है।

इस चित्र में हमें शहर दिखाई दे रहा है। बड़ा तालाब नजर आ रहा है। ये एक मस्जिद का चित्र है।

इस चित्र में हमें ट्रेन दिखाई दे रही हे जिसका रंग नीला हे पहाड़ी दिख रही हे।

बंबू लगे हुए हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान का रंग नीला है एक आदमी दिख रहा है।

पानी नज़र आ रहा है पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं घर बना हुआ है।

पार्क दिख रहा है।

घास नजर आ रही है गमले दिख रहे हैं।